यहां पर एक दुकान है इसके अंदर हो रही है और यहां पे एक चेयर है।

और दो लड़के जा रहे हैं और कुर्सियां रखी हुई है।

यहां पर एक मंदिर है मंदिर के ऊपर चद्दर लगे हुए हैं।

और इनके पीछे एक बोर्ड पर--

सारी बाइके हैं और तीन लड़के हैं।

यहां पर कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है।

यहां पे बहुत सारी औरतें और व्यक्ति है।

यहां पे कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है।

यहां पर कुछ इस प्रकार का दृश्य दिखाई दे रहा है।